ये कोलेज है इसके अंदर बार में ए_सी लगाई दिख रहा साइड में सीढ़ियां भी लगाई दिख रही बीच में कुछ लगा हुआ है गमले लगे हुए हैं गमले के अंदर कुछ पेड़ पौधे जैसे लगाए हुए छोटे छोटे --

यहां कुछ मोमबत्तियां लगी हुई है लाइट एंड मोमबत्ती लगी हुई है मोमबत्ती दिखा रही है बहोत ज्यादा मोमबत्ती दिखा रहे है गमले बनाए हुई है अलग-अलग मोमबत्ती का दीप का ओ बनाया हुआ गुम्बद --

अलग अलग तरह के समान दिखाई दे रहा है सामने से कुछ बहोत अलग अलग तरीके से समान दिखाई दे रहा लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा अलग अलग समान दिखाई जिलेट का वो रेजर कुछ लगा हुआ है सामने--

टेंपल की तरफ हुआ है मुंह पर झंडी भी लगा हुआ है टेंपल योगा जब साइड में पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहा है उधर पीछे में--

एक बच्ची अंदर घूम रही है बच्चिया और बच्चे सभी बैठे हुए हैं सभी मोमदन लग रहे हैं सभी के सिर पे टोपी लगा रखी है सभी ने।

लगा हुआ है टप लगा हुआ है पंडित जी का हाथ दिखाई दे रहा है साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है उधर भगवान के ऊपर वो छतरी के दिखाई दे रहा है उधर साइड में वो पिलर लगे हुए हैं।